सामने एक आदमी व्हाइट टी-शर्ट पेहने है एक आदमी ने --

सामने लाल रंग की बहुत सारी कुर्सियां है और उसमें--

और एक मैट बिछा हुआ है सामने बिल्डिंग सफेद है।

इसके अंदर बहुत सारे झूले हैं।

इस शॉप मे कुछ है।

उस घोड़े को एक आदमी ने पकड़ा हुआ है इसमें एक आदमी ने लाठी ली हुई है।

चारों तरफ मौसम बहुत सुहावना है हरे भरे पेड़ हैं।

एक आदमी उसे देख रहा है।

एक आदमी दूसरी तरफ देख रहा है।

नीचे एक आदमी दुकान मे जा रहा है।

यह एक शॉप है इस शॉप में बहुत सारे समान रखे हुए हैं।

इसके सामने एक गमला है गमले में पौधा है।

यह एक सुविधा केंद्र है।

अनार बहुत लाल हैं उसके साथ ही केले लटके हुएं हैं।

तीन कुर्सियां दिखाई दे रही हैं ये कुर्सियां खाली हैं।

इस दुकान के बाहर एग्रो फूड लक लिखा हुआ है।

इसका पूरा नाम अशोका एग्रो फूड है।